मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
साथियो आज की मन की बात में देश की उस महान शख्सियत मैं उनकी भी बात करूँगा
हम सभी हिन्दुस्तानवासियों के दिल में उनके प्रति बहुत सम्मान है बहुत लगाव है
शायद ही हिन्दुस्तान का कोई नागरिक होगा जो उनके प्रति आदर ना रखता हो सम्मान ना करता हो
वो उम्र में हम सभी से बहुत बड़ी हैं और देश के अलगअलग पड़ावों अलगअलग दौर की वो साक्षी हैं
हम उन्हें दीदी कहते हैं लता दीदी
वो इस 28 सितम्बर को 90 वर्ष की हो रही हैं
विदेश यात्रा पर निकलने से पहले मुझे दीदी से फ़ोन पर बात करने का सौभाग्य मिला था
ये बातचीत वैसे ही थी जैसे बहुत दुलार में छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से बात करता है
मैं इस तरह के व्यक्तिगत संवाद के बारे में कभी बताता नहीं लेकिन आज चाहता हूँ कि आप भी लता दीदी की बातें सुनें उस बातचीत को सुनें
सुनिये कि कैसे आयु के इस पड़ाव में भी लता दीदी देश से जुड़ी तमाम बातों के लिये उत्सुक हैं तत्पर हैं और जीवन का संतोष भी भारत की प्रगति में है बदलते हुई भारत में है नई ऊंचाईयों को छू रहे भारत में है
लता दीदी प्रणाम मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ
मैंने फ़ोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर
हाँ हाँ
मैं हवाई जहाज में ट्रैवेलिंग कर रहा हूँ
तो मैंने सोचा जाने से पहले ही
आपको जन्मदिन की बहुतबहुत शुभकामनाएं अग्रिम बधाई दे दूं
आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेआपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे बस यही प्रार्थना और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फ़ोन कर दिया
आपका फ़ोन आयेगा यह सुन के ही मैं बहुत ये हो गयी थी
आप जा के कब वापस आयेंगे
मेरा आना होगा 28 लते नाइट और 29 मॉर्निंग और तब आपका जन्मदिन हो गया होगा
अच्छा अच्छा
जन्म दिन तो क्या मनायेंगे और बस घर में ही सब लोग
दीदी देखिये मुझे तो
आपका आशीर्वाद मिले तो
अरे आपका आशीर्वाद हम मांगते हैं आप तो हमसे बड़े हैं
उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है
दीदी आप उम्र में भी बड़ी हैं और काम में भी बड़ी हैं और आपने ये जो सिद्धी पायी है ये साधना और तपस्या करके पायी है
जी मैं तो सोचती हूँ कि मेरे मातापिता का आशीर्वाद है और सुनने वालों का आशीर्वाद है
मैं कुछ नहीं हूँ
जी यही आपकी नम्रता जो है ये हम नयी पीढ़ी के सबके लिये ये बहुत बड़ी शिक्षा है बहुत बड़ा हमारे लिये इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ क्लीयर करने के बाद भी आपके मातपिता के संस्कार और उस नम्रता को हमेशा ही प्राथमिकता दी है
जी
और मुझे तो खुशी है कि जब आप गर्व से कहती हो कि माँ गुजराती थी
जी
और मैं जब भी आपके पास आया
आपने मुझे कुछनाकुछ गुजराती खिलाया
आप क्या हैं आपको ख़ुद पता नहीं है
मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है और वो वही मुझे बहुत खुशी होती है
बहुत अच्छा लगता है
बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहें पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे और हम जैसे लोग कुछनाकुछ अच्छा करते रहें मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है
आपकी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है और आपकी कुछनाकुछ भेंटसौगात भी मुझे मिलती रहती है तो ये एक अपनापनजो एक पारिवारिक नाता है उसका एक विशेष आनंद मुझे होता है
नहीं मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ जानती हूँ कि आप कितने बसी होते हैं और आपको कितना काम होता है
क्याक्या सोचना पड़ता है
जब आप जा के अपनी माता जी को पाँव छू के आये देखा तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास और उनका आशर्वाद लिया
हाँ मेरी माँ को याद था और वो मुझे बता रही थी
और टेलीफोन पर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा
हमारी माँ बहुत प्रसन्न थी आपके इस प्यार के कारण
और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं
और फिर एक बार मैं आपको जन्मदिन की बहुतबहुत शुभकामनाएं देता हूँ
जी
इस बार मुंबई आया तो मन करता था कि रूबरू आ जाऊं
जी जी जरुर
लेकिन समय की इतनी व्यस्तता थी कि मैं आ नहीं पाया
जी
लेकिन मैं बहुत ही जल्द आऊँगा
और घर आ करके कुछ गुजराती चीजें आपके हाथ से खाऊंगा
जी जरुर जरुर जरुर
ये तो मेरा सौभाग्य होगा
प्रणाम दीदी
बहुत शुभकामनाएं
बहुत प्रणाम
मेरे प्यारे देशवासियो नवरात्रि के साथ ही आज से त्योहारों का माहौल फिर एक बार नयी उमंग नयी ऊर्जा नया उत्साह नए संकल्प से भर जाएगा
फेस्टिवल सीजन है ना आगे कई हफ़्तों तक देश भर में त्योहारों की रौनक रहेगी
हम सभी नवरात्रि महोत्सव गरबा दुर्गापूजा दशहरा दीवाली भैयादूज छठपूजा अनगिनत त्यौहार मनायेंगे
आप सभी को आने वाले त्योहारों की ढ़ेर सारी शुभकामनाएं
त्यौहारों में परिवार के सब लोग साथ आयेंगे
घर खुशियों से भरे होंगे लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन त्योहारों की खुशियों से वंचित रह जाते हैं और इसी को तो कहते हैं चिराग तले अन्धेरा
शायद ये कहावत सिर्फ शब्द नहीं हैं हम लोगों के लिए एक आदेश है एक दर्शन है एक प्रेरणा है
सोचिये एक तरफ कुछ घर रोशनी से जगमगाते हैं वहीं दूसरी तरफ उसी के सामने आसपास कुछ लोगों के घरों में अन्धेरा छाया होता है
कुछ घरों में मिठाइयाँ खराब हो रही होती हैं तो कुछ घरों में बच्चे मिठाई को तरसते हैं
कहीं अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं होती तो कहीं तन ढकने की मसक्कत मशक्कत चलती है
क्या इसे चिराग तले अन्धेरा नहीं कहेंगे यही तो चिराग तले अन्धेरा है
इन त्योहारों का असली आनंद तभी है जब यह अन्धेरा छठे ये अन्धेरा कम हो उजियाला फैले
हम वहाँ भी खुशियाँ बांटे जहाँ अभाव है और ये हमारा स्वभाव भी हो
हमारे घरों में मिठाइयों की कपड़ों की गिफ्ट्स की जब डिलिवरी इन हो तो एक पल डिलिवरी आउट के बारे में भी तो सोचें
कमसेकम हमारे घरों में जो अधिकता में है जिसको अब हम काम में नहीं लेते ऐसी चीजों की तो डिलिवरी आउट जरुर करें
कई शहरों में कई न्गोस युवा साथियों के स्टार्टअप्स ये काम करते हैं
वो लोगों के घरों से कपड़े मिठाइयाँ खाना सब कुछ इकट्ठा कर जरुरतमंदों को ढूंढढूंढ करके उन तक पहुंचाते हैं और गुमनाम गतिविधि करते हैं
क्या इस बार त्योहारों के इस सीजन में पूरी जागरूकता और संकल्प के साथ इस चिराग तले अँधेरे को मिटा सकते हैं कई ग़रीब परिवारों के चेहरे पर आई मुस्कान त्योहारों पर आपकी खुशियाँ दोगुना कर देगी आपका चेहरा और चमकेगा आपका दिया और प्रकाशमान हो जाएगा आपकी दीवाली और रोशन हो जायेगी
मेरे प्यारे भाइयोबहनो दीपावली में सौभाग्य और समृद्धि के रूप में लक्ष्मी का घरघर आगमन होता है
परंपरागत रूप से लक्ष्मी का स्वागत है
क्या इस बार हम नए तरह से लक्ष्मी का स्वागत कर सकते हैं हमारी संस्कृति में बेटियों को लक्ष्मी माना गया है क्योंकि बेटी सौभाग्य और समृद्धि लाती है
क्या इस बार हम अपने समाज में गाँवों में शहरों में बेटियों के सम्मान के कार्यक्रम रख सकते हैं सार्वजनिक कार्यक्रम रख सकते हैं
हमारे बीच कई ऐसी बेटियाँ होंगी जो अपनी मेहनत और लगन से टैलेंट से परिवार का समाज का देश का नाम रोशन कर रही होंगी
क्या इस दिवाली पर भारत की इस लक्ष्मी के सम्मान के कार्यक्रम हम कर सकते हैं हमारे आसपास कई बेटियाँ कई बहुएँ ऐसी होंगी जो असाधारण काम कर रही होंगी
कोई गरीब बच्चों की पढाई का काम कर रही होंगी
कोई स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने में जुटी होगी तो कोई डॉक्टर इंजीनियर बन कर समाज की सेवा कर रही होगी
वकील बन करके किसी को न्याय दिलाने के लिए कोशिश करती होगी
हमारा समाज ऐसी बेटियों की पहचान करे सम्मान करे और उन पर अभिमान करे
इनके सम्मान के कार्यक्रम देशभर में हो
एक काम और कर सकते हैं कि इन बेटियों की उपलब्धियों के बारे में सोशल मीडिया में अधिक से अधिक शेयर करें और हैशटैग उसे करें भारतकीलक्ष्मी भारत की लक्ष्मी
जैसे हम सबने मिलकर एक महाअभियान चलाया था सेल्फी विथ डॉगटर और वो दुनियाभर में फैल गया था
उसी तरह इस बार हम अभियान चलायें भारत की लक्ष्मी
भारत की लक्ष्मी के प्रोत्साहन का मतलब है देश और देशवासियों के समृद्धि के रास्ते मजबूत करना
मेरे प्यारे देशवासियों मन की बात का मैंने पहले भी कहा था बहुत बड़ा लाभ है कि मुझे कई जानेअनजाने लोगों से प्रत्यक्षपरोक्ष संवाद करके का सौभाग्य मिल जाता है
पिछले दिनों दूरसुदूर अरुणाचल से एक विद्यार्थी ने अलीना तायंग मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पत्र भेजा है
और उसमें लिखा है मैं पत्र पढ़ देता हूँ आपके सामने
आदरणीय प्रधानमंत्री जी
मेरा नाम अलीना तायंग है
मैं रोइंग अरुणाचल प्रदेश से हूँ
इस बार जब मेरे एक्साम का रिजल्ट आया तो मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि तुमने एक्साम वॉरियर्स किताब पढ़ी क्या मैंने बताया कि यह पुस्तक तो मैंने नहीं पढ़ी है
लेकिन वापस जाकर मैंने ये किताब खरीदी और उसे 23 बार पढ़ गई
इसके बाद मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा
मुझे लगा कि यदि मैंने ये किताब एक्साम से पहले पढ़ी होती तो मुझे काफी लाभ होता
मुझे इस किताब से कई पहलू बहुत अच्छे लगे लेकिन मैंने ये भी चीज़ देखी कि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारे मंत्र है लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स के लिए इस बुक में ज्यादा कुछ नहीं है
मैं चाहूंगी कि अगर आप किताब के नए एडिशन के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो उसमें पेरेंट्स और टीचर्स को लेकर कुछ और मंत्र कुछ और कंटेंट जरुर शामिल करें
देखिये मेरे युवा साथियों को भी भरोसा है कि देश के प्रधान सेवक को काम बतायेंगे तो हो ही जाएगा
मेरे नन्हे से विद्यार्थी मित्र पहले तो पत्र लिखने के लिए आपका धन्यवाद
एक्साम वॉरियर्स 23 बार पढ़ने के लिए धन्यवाद
और पढ़ते समय उसमें से क्या कमी है ये भी मुझे बताने के लिए बहुतबहुत धन्यवाद और साथसाथ मेरे इस नन्हे से मित्र ने मुझे काम भी सौंप दिया है
कुछ करने का आदेश दिया है
मैं जरुर आपके आदेश का पालन करूँगा
आपने जो कहा है कि अगर मैं नयी एडिशन के समय निकल पाऊँगा तो जरुर उसमें मैं पेरेंट्स के लिए टीचर्स के लिए कुछ बातें लिखने का प्रयास करूँगा
लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि क्या मुझे आप लोग मदद कर सकते है रोजमर्रा की ज़िन्दगी में आप क्या अनुभव करते हैं
देश के सारे विद्यार्थीयों से टीचर्स से पेरेंट्स से मेरा आग्रह है कि आप स्ट्रेस फ्री एक्साम से जुड़े पहलुओं को लेकर के अपने अनुभव मुझे बताइए अपने सुझाव बताइए
मैं जरुर उसका अध्ययन करूँगा
उस पर मैं सोचूँगा और उसमें से जो मुझे ठीक लगेगा उसको मैं मेरे अपने शब्दों में अपने तरीके से जरुर लिखने का प्रयास करूँगा और हो सकता है अगर आपके सुझाव ज्यादा आयेंगे तो मेरी नई एडिशन की बात भी पक्की हो जायेगी
तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके विचारों का
अरुणाचल के हमारे नन्हे से दोस्त विद्यार्थी अलीना तायंग को फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो आप अखबारों के माध्यम से टीवी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के व्यस्त कार्यक्रमों के विषय में जानते भी हैं व्यस्तता की चर्चा भी करते हैं
लेकिन आपको मालूम है ना मैं भी आप ही के जैसा एक सामान्य इंसान हूँ
एक सामान्य नागरिक हूँ और इसलिए एक सामान्य जिंदगी में जोजो चीज़ों का प्रभाव होता है वैसा प्रभाव मेरे जीवन में मेरे मन को भी होता है क्योंकि मैं भी तो आप ही के बीच निकला हूँ ना
देखिये इस बार यूएस ओपन में जीत के जितने चर्चें थे उतने ही रनर यूपी दानील मेदवेदेव के स्पीच के भी थे
सोशल मीडिया पर काफी चल रहा था तो फिर मैंने भी वो स्पीच सुनी और मैच भी देखा
23 साल के दानील मेदवेदेव उनकी सिम्पलिसिटी और उनकी मैच्यूरिटी हर किसी को प्रभावित करने वाली थी
मैं तो जरुर प्रभावित हुआ
इस स्पीच से बस थोड़ी देर पहले ही वे 19 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता और टेनिस के लेजेंड राफेल नादल से फाइनल में हार गए थे
इस अवसर पर कोई और होता तो वह उदास और निराश हो गया होता लेकिन उनका चेहरा मुरझाया नहीं बल्कि उन्होंने अपनी बातों से सब के चेहरों पर मुस्कान ला दी
उनकी विनम्रता सरलता और ट्रू सेंसे में लेटर एंड स्पिरिट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो रूप देखने को मिला हर कोई कायल हो गया
उनकी बातों का वहाँ मौजूद दर्शकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया
दानील ने चैम्पियन नादल की भी जमकर के तारीफ की
उन्होंने कहा कि किस प्रकार नादल ने लाखों युवाओं को टेनिस के लिए प्रेरित किया है
साथ ही ये भी कहा कि उनके साथ खेलना कितना मुश्किल था
कड़ी टक्कर में हार के बाद भी उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी नादल की तारीफ कर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जीता जागता सबूत दे दिया
हालांकि दूसरी तरफ चैम्पियन नादल ने भी दानील के खेल की जमकर सराहना की
एक ही मैच में हारने वाले का जोश और जीतने वाले की विनम्रता दोनों देखने लायक थी
यदि आपने दानील मेदवेदेव की स्पीच नहीं सुनी है
तो मैं आप सभी से विशेष रूप से युवाओं से कहूँगा कि उनके इस वीडियो को जरुर देखें
इसमें हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के सीखने के लिए बहुत कुछ है
ये वे क्षण होते हैं जो हारजीत से बहुत परे होते हैं
हारजीत कोई मायना नहीं रखता है
जिंदगी जीत जाती है और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में बहुत बढ़िया ढंग से इस बात को कहा गया है
हमारे पूर्वजों की सोच सचमुच में काबिले दाद है
हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है
विद्या विनय उपेता हरति
न चेतांसी कस्य मनुज्स्य
जनयति लोकस्य लोचन आनन्दम
यानी जब किसी व्यक्ति में योग्यता और विनम्रता एक साथ समाहित हो जाए तो वो फिर किसका दिल नहीं जीत सकता है
वास्तव में इस युवा खिलाड़ी ने दुनिया भर के लोगों का दिल जीता है
मेरे प्यारे देशवासियो और खासकरके मेरे युवा मित्रों मैं अब जो बात करने जा रहा हूँ वो सीधासीधा आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ
वादविवाद चलते रहेंगें पक्षविपक्ष चलता रहेगा लेकिन कुछ चीजें बढ़ने से पहले ही अगर रोक लेते हैं तो बहुत बड़ा लाभ होता है
जो चीजें बहुत बढ़ जाती हैं
बहुत फैल जाती हैं
उसको बाद में रोकना बहुत मुश्किल होता है
लेकिन अगर शुरू में ही हम जागृत होकर के उसे रोक लें तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है
इसी भाव से मेरा मन करता है आज खासकरके मेरे युवाओं से मैं जरुर कुछ बातें करूँ
हम सभी जानते हैं कि तम्बाकू का नशा सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है और उसकी लत छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है
तम्बाकू का सेवन करने वाले लोगों को कैंसर डायबीट्स ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है
ऐसा हर कोई कहता है
तम्बाकू से नशा उसमें मौजूद निकोटाइन के कारण होता है
किशोरावस्था में इसके सेवन से दिमाग का विकास भी प्रभावित होता है
लेकिन आज मैं आपसे एक नए विषय पर बात करना चाहता हूँ
आपको पता होगा कि हाल ही में भारत में एसिगेरेट पर प्रतिबन्ध लगाया गया है
सामान्य सिगारेट से अलग एसिगेरेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है
एसिगेरेट में निकोटाइन युक्त तरल पदार्थ को गर्म करने से एक प्रकार का केमिकल धुंआ बनता है
इसके माध्यम से निकोटाइन का सेवन किया जाता है
सामान्य सिगारेट के खतरों को जहाँ हम सब भलीभांति समझते हैं वहीं ई सिगारेट के बारे में एक गलत धारणा पैदा की गई है
ये भ्रान्ति फैलाई गई है कि एसिगेरेट से कोई खतरा नहीं है
बाकी सिगारेट की तरह इससे दुर्गन्ध न फैले इसके लिए इसमें सुगन्धित रसायन तक मिलाए जाते थे
हमनें आसपास देखा है कि अगर घर में पिता चैन स्मोकर होते हैं तो भी वो घर के बाकी लोगों को स्मोकिंग करने से रोकते हैं टोकते हैं
और चाहते हैं उनके बच्चों को सिगारेट की बीड़ी की आदत न लगे
उनकी यही कोशिश होती है कि परिवार का कोई भी सदस्य धूम्रपान न करे स्मोकिंग न करे
वो जानते हैं कि स्मोकिंग से तम्बाकू से शरीर को भारी नुकसान होता है
सिगारेट के खतरे को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं है
उससे नुकसान होता है
ये बेचने वाला भी जानता है
पीने वाला भी जानता है और देखने वाला भी जानता है
लेकिन ई सिगारेट का मामला बहुत ही अलग है
ई सिगारेट को लेकर लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है
वे इसके खतरे को लेकर भी पूरी तरह अंजान हैं और इसी कारण कभीकभी कौतुहल में ई सिगारेट चुपके से घर में प्रवेश कर जाती है
और कभी तो कभी जादू दिखा रहा हूँ ऐसे कर के भी बच्चे एकदूसरे को दिखाते रहते हैं
परिवार में माँबाप के सामने भी देखिये मैं आज नया जादू दिखाता हूँ
देखिये मेरे मुँह में से मैं धुंआ निकालता हूँ
देखिये बिना आग लगाए बिना दीयासली जलाए देखिये मैं धुंआ निकालता हूँ
जैसे कोई जादू का शो दिखा रहा है और परिवार के लोग ताली भी बजा देते हैं
पता ही नहीं है
एक बार जैसे ही घर के किशोर और युवा इसके चंगुल में फंस गए तो फिर धीरेधीरे वे इस नशे के आदी हो जाते हैं
इस बुरी लत के शिकार हो जाते हैं
हमारा युवाधन बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ता है
अनजाने में चल पड़ता है
वास्तव में ई सिगारेट में कई हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है
आप जानते ही हैं कि जब कोई हमारे आसपास धूम्रपान करता है तो हमें इसका पता गंध से ही चल जाता है
उसके जेब में सिगारेट का पैकेट हो तब भी गंध से पता चल जाता है
परन्तु ई सिगारेट के साथ ऐसी बात नहीं है
ऐसे में कई किशोर और युवा जानेअनजाने और कभी फैशन स्टेटमेंट के रूप में बड़े गर्व के साथ अपने किताबों के बीच में अपने दफ्तर में अपनी जेब में कभीकभी अपने हाथ में लेकर के घूमते नजर आ रहे हैं और वो इसके शिकार हो जाते हैं
युवा पीढ़ी देश का भविष्य है
ई सिगारेट पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ताकि नशे का यह नया तरीका हमारे युवा देश को तबाह न कर दे
हर परिवार के सपनों को रौंद न डाले
बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो जाए
ये बीमारी ये आदत समाज में जड़ें न जमा दें
मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूँ कि तम्बाकू के व्यसन को छोड़ दें और ई सिगारेट के संबंध में कोई गलत फहमी न पालें
आइये हम सब मिलकर एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें
हाँ आपको फिट इंडिया तो याद है न फिट इंडिया का मतलब यहाँ थोड़ा है कि हाथपैर सुबहशाम दोदो घंटे हम जिम में चले जाएं तो हो जाएगा
इन सब से भी बचना होता है फिट इंडिया के लिए
मुझे विश्वास है मेरी बात आपको बुरी नहीं लगेगी जरुर अच्छी लगेगी
मेरे प्यारे भाइयो बहनो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा भारतवर्ष ऐसे असाधारण लोगों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए सारा जीवन खपा दिया है
ये हमारी भारतमाता ये हमारा देश बहुरत्ना वसुंधरा है
अनेक मानव रत्न इस धरती से निकले हैं
भारतवर्ष ऐसे असाधारण लोगों की जन्मभूमि रहा है कर्मभूमि रहा है
और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं औरों के लिए अपने आप को खपा दिया है
ऐसी ही एक महान विभूति को 13 अक्टूबर को वेटिकन सिटी में सम्मानित किया जा रहा है
यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि पोप फ्रांसिस आने वाले 13 अक्टूबर को मरियम थ्रेसिया को संत घोषित करेंगे
सिस्टर मरियम थ्रेसिया ने 50 साल के अपने छोटे से जीवनकाल में ही मानवता की भलाई के लिए जो कार्य किए वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है
समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र से उनका अद्भुत लगाव था
उन्होंने कई स्कूल हॉस्टल और अनाथालय बनवाए और जीवनपर्यन्त इस मिशन में लगी रहीं
सिस्टर थ्रेसिया ने जो भी कार्य किया उसे निष्ठा और लगन के साथ पूरे समर्पण भाव से पूरा किया
उन्होंने कांग्रीगेशन ओएफ थे सिस्टर्स ओएफ थे होली फैमिली की स्थापना की
जो आज भी उनके जीवन दर्शन और मिशन को आगे बढ़ा रहा है
मैं एक बार फिर से सिस्टर मरियम थ्रेसिया को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भारत के लोगों को खास तौर पर हमारे ईसाई भाईबहनों को इस उपलब्धि के लिए बहुतबहुत बधाई देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियों भारत ही नहीं आज पूरी दुनिया के लिए ये गर्व का विषय है कि आज जब हम गाँधी 150 मना रहे हैं तो इसके साथ ही 130 करोड़ देशवासियों ने सिंगल उसे प्लास्टिक से मुक्त होने का संकल्प लिया है
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत ने पूरे विश्व में जिस प्रकार की लीड ली है उसे देखकर आज सभी देशों की नजरे भारत की ओर टिकी है
मुझे पूरा विश्वास है आप सब 2 अक्तूबर को सिंगल उसे प्लास्टिक से मुक्ति के लिए होने वाले अभियान का हिस्सा बनने वाले ही होंगे
जगहजगह लोग अपनेअपने तरीक़े से इस अभियान में अपना योगदान दे रहें हैं
लेकिन हमारे ही देश के एक नौजवान ने एक बड़ा ही अनोखा अभियान चलाया है
उनके इस काम पर मेरा ध्यान गया तो मैंने उनसे फ़ोन पर बात करके उनके इस नए प्रयोग को जानने समझने की कोशिश की
हो सकता है उनकी ये बातें देश के और लोगों को भी काम आये
श्रीमान् रिपुदमन बेल्वी जी एक अनोखा प्रयास कर रहें हैं
वे प्लॉगिंग करते हैं
जब पहली बार मैंने प्लॉगिंग शब्द सुना तो मेरे लिए भी नया था
विदेशों में तो शायद ये शब्द कुछ मात्रा में उपयोग हुआ है
लेकिन भारत में रिपुदमन बेल्वी जी ने इसको बहुत ही प्रचारित किया है
आइये उनसे कुछ बाते करते हैं
हेल्लो रिपुदमन जी नमस्कार मैं नरेन्द्र मोदी बोल रहा हूँ
जी सर बहुतबहुत थांक यू सर
रिपुदमन जी
आप जो ये प्लॉगिंग को लेकर के इतना बड़ा समर्पित भाव से काम कर रहे हैं
तो मेरे मन में जिज्ञासा थी तो मैंने सोचा में खुद ही फ़ोन करके आपसे पूछूँ
ये कल्पना कहाँ से आई आपके मन में
ये शब्द ये तरीका कैसे मन में आया
सर युवाओं को आज कुछ कूल चाहिए कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए उनको मोटीवेट करने के लिए तो मैं तोvmotivate हो गया
अगर मेरे को 130 करोड़ भारतीयों को इस मुहिम में जोड़ना है तो मुझे कुछ कूल करना था कुछ इंटरेस्टिंग करना था तो मैं खुद एक रनर हूँ तो सुबह जब हम रुन करते हैं तो ट्रैफिक कम होता है लोग कम होते हैं तो कूड़ा और ट्रैश और प्लास्टिक सबसे ज्यादा दिखता है तो इंस्टीड ओएफ क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ करते है और अपने रनिंग ग्रुप के साथ स्टार्ट किया देल्ही में और फिर पूरे भारत में इसको लेकर गया
हर जगह से काफी एप्रिशिएशन मिला
एक्जैक्टली आप क्या करते थे थोड़ा समझिए ताकि मुझे भी ध्यान में आये और मन की बात के माध्यम से देशवासियों को भी पता चले
सर तो हमने ये स्टार्ट किया रुन क्लीनअप मूवमेंट
जहाँ पर हम रनिंग ग्रुप्स को उनके वर्क आउट के बाद उनकी कूल डाउन एक्टिविटी में हमने बोला आप कूड़ा उठाना स्टार्ट करो अपना आप प्लास्टिक उठाना स्टार्ट करो तो आप रनिंग कर रहे हो आप क्लीनिंगअप कर रहे हो सडेनली बहुत सारी एक्सरसाइज अद्द हो रही है
तो आप जस्ट रनिंग नहीं कर रहे हो और स्क्वाट्स कर रहे हो दीप स्क्वाट्स कर रहे हो आप लंजेस कर रहे हो आप फॉरवर्ड बेंट कर रहे हो
तो वो एक होलिस्टिक वर्क आउट हो गया
और आपको जान कर ख़ुशी होगी कि पिछले साल काफी सारी फिटनेस मैगेजिन्स में इंडिया का टॉप फिटनेस ट्रेंड इसको नॉमिनेट किया गया है इस फुन को
आपको बधाई है इस बात के लिए
धन्यवाद् सर
तो अभी आपने 5 सितम्बर से कोच्चि से शुरू किया है
जी सर इस मिशन का नाम है R
Elan रुन टो मेक इंडिया लिटर फ्री जैसे आपने ऑक्टोबर 2nd को एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट देना है एंड आई एएम सुरे कूड़ा मुक्त होगा तो प्लास्टिक मुक्त भी होगा एंड वो एक इंडिविड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी आएगी और तो आई एएम रनिंग एंड क्लीनिंगअप थाउसेंड किलोमीटर कवरिंग 50 सिटीज
तो सबने बताया कि ये शायद दुनिया की लॉन्जेस्ट क्लीनअप ड्राइव होगी और इसके साथसाथ हम एक बहुत ही कूल सरसोशल मीडिया हैशटैग उसे किया है हमने प्लास्टिकपवास जहाँ पर हम लोगों को बोल रहे है कि आप हमें बताइए आप कौनसी सिंगल चीज़ है सिंगल उसे एनीथिंग नोट जस्ट सिंगल उसे प्लास्टिक बट सिंगल उसे एनीथिंग जो आप कंप्लीटली अपनी लाइफ से हटा देंगे
वाह आप 5 सितम्बर से निकले हो तो क्या अनुभव है अब तक का आपका
सर अभी तक तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है
पिछले दो साल में भी हमने 300 के आसपास प्लॉगिंग ड्राइव्स की है अल्ल ओवर इंडिया तो जब हमने कोच्चि से स्टार्ट किया तो रनिंग ग्रुप्स ने जोइन किया वहाँ के लोकल जो क्लीनअप्स होते हैं उनको मैंने अपने साथ जोड़ा
कोच्चि के बाद मदुरै कोयंबटूर सलेम अभी हमने उडुपी में किया वहाँ पे एक स्कूल इनवाइट आया तो छोटेछोटे बच्चे सर 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 6th स्टैंडर्ड तक उनको एक वर्कशॉप देने के लिए बुलाया था मेरे को आधे घंटे के लिए और वो आधे घंटे का वर्कशॉप तीन घंटे का प्लॉगिंग ड्राइव हो गया
सर बेकाउस बच्चे इतने एंथूसियास्टिक थे थाट थे वांटेड टो डीओ थिस एंड थे वांटेड टो टेक इत बैक और अपने पेरेंट्स को बताना अपने नीगबोर्स को बताना अपने पीयर्स को बताना वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हमारे लिए इसको नेक्स्ट लेवेल पे ले के जाना
रिपु जी परिश्रम नही है ये एक साधना है
सचमुच में आप साधना कर रहे हैं
मेरी तरफ से बहुत बधाई देता हूँ
लेकिन मान लीजिये आपको तीन बातें देशवासियों को कहनी है
तो ऐसी तीन बातें स्पेसिफिक क्या सन्देश देंगे आप
मैं एक्चुअली तीन स्टेप्स देना चाहूँगा
टो आ लिटर फ्री इंडिया टो आ कूड़ा मुक्त भारत
स्टेप नंबर ओने कूड़ा कूड़ेदान में डालें सिर्फ
स्टेप नंबर त्वो कोई भी आपको कूड़ा दिखता है जमीन पे उसको उठाये और कूड़ेदान में डालें
स्टेप नंबर थ्री अगर कूड़ादान नही दिखता है अपनी जेब में रखे या अपनी गाड़ी में रखे घर लेकर जाए
सेग्रीगेट करें इंटो ड्राय एंड वेट वास्ते और सुबह म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आयेगी उनको दे दें
अगर हम ये तीन स्टेप्स फोलो करेंगे वे विल सी आ लिटर फ्री इंडिया हमें कूड़ा मुक्त भारत मिलेगा
देखिये रिपु जी बहुत सरल शब्दों में और सामान्य मानवी कर सके उस भाषा में आपने एक प्रकार से गाँधी जी के सपने को ले करके चल रहें हैं साथ साथ गाँधी जी की जो सरल शब्दों में बात बताने का तरीका था वो भी आपने एडॉप्ट कर लिया है
धन्यवाद्
इसलिए आप बधाई के पात्र है
रिपुदमन जी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से और खासकर के नौजवानों को पसंद आये उस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को ढाला है
मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ
और साथियों इस बार पूज्य बापू की जयंती के अवसर पर खेल मंत्रालय भी फिट इंडिया प्लॉगिंग रुन का आयोजन करने जा रहा है
2 अक्टूबर को 2 किलोमीटर प्लॉगिंग पूरे देशभर में ये कार्यक्रम होने वाले हैं
ये कार्यक्रम कैसे करना चाहिए कार्यक्रम में क्या होता है ये रिपुदमन जी के अनुभव से हमने सुना है
2 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस अभियान में हम सबको ये करना है कि हम 2 किलोमीटर तक जॉगिंग भी करें और रास्ते में पड़े प्लास्टिक के कचरों को भी जमा करे
इससे हम न केवल अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे बल्कि धरती माँ की सेहत की भी रक्षा कर सकेंगे
इस अभियान से लोगों में फिटनेस के साथसाथ स्वच्छता को ले कर भी जागरूकता बढ़ रही है
मुझे विश्वास है कि 130 करोड़ देशवासी इस दिशा में एक कदम उठाएंगे तो सिंगल उसे प्लास्टिक की मुक्त होने की दिशा में अपना भारत 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा
रिपुदमन जी फिर एक बार आपको बहुतबहुत धन्यवाद
और आपको आपकी टीम को और ये नई कल्पकता के लिए मेरी तरफ से बहुतबहुत बधाई
मेरे प्यारे देशवासियो 2 अक्टूबर की तैयारियाँ तो पूरे देश में और दुनिया में चल रही हैं लेकिन हम गाँधी 150 को कर्तव्यपथ पर ले जाना चाहते हैं
अपने जीवन को देशहित में बदलने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं
एक बात एडवांस में जरा याद कराने का मन करता है
वैसे मैं अगली मन की बात में उसको विस्तार से जरुर कहूँगा लेकिन आज मैं जरा एडवांस में इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको तैयारी करने का अवसर मिले
आपको याद है कि 31 अक्टूबर सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्म जयंती है
एक भारतश्रेष्ठ भारत ये हम सबका सपना है और उसी निमित्त हर वर्ष 31 अक्टूबर को हम पूरे देश में रुन फोर यूनिटी देश की एकता के लिए दौड़
अपार वृद्ध सब लोग स्कूल कॉलेज सब हजारों की तादाद में हिंदुस्तान के लाखों गाँव में उस दिन देश की एकता के लिए हमें दौड़ना है
तो आप अभी से तैयारी शुरू कीजिये
विस्तार से तो बात आगे जरुर करूँगा लेकिन अभी समय है कुछ लोग प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते है कुछ योजना भी कर सकते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो आपको याद होगा 15 अगस्त को मैंने लाल किले से कहा था कि 2022 तक आप भारत के 15 स्थानों पर जाएँ
कम से कम 15 स्थान और वो भी हो सके तो एक रात दो रात रुकने वाला कार्यक्रम बनाये
आप हिंदुस्तान को देखेँ समझें अनुभव करें
हमारे पास कितनी विविधताएँ हैं
और जब ये दिवाली के त्योहार में छुट्टियों के दिन आते हैं लोग जरुर जाते हैं और इसलिए मैं फिर से आग्रह करूँगा कि आप भारत की किसी भी ऐसी 15 जगहों पर घूमने जरुर जाएँ
मेरे प्यारे देशवासियो अभी परसों ही 27 सितम्बर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया और दुनिया की कुछ ज़िम्मेवार एजेंसिया टूरिज्म का रैंकिंग भी करती हैं और आपको जानकर के ख़ुशी होगी कि इंडिया ने ट्रैवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में बहुत सुधार किया है
और ये सब आप सब के सहयोग के कारण हुआ है
विशेषकर टूरिज्म का महत्म्य समझने के कारण हुआ है
स्वच्छता के अभियान का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है
और ये सुधार कितना है मैं बताऊं आपको आपको जरुर आनंद होगा
आज हमारा रैंक चौतीस है और पांच साल पहले हमारा रैंक 65वें नंबर पे था यानि एक प्रकार से हम बहुत बड़ा जंप लगा चुके हैं
अगर हमने और कोशिश की तो आज़ादी के 75 साल आतेआते हम टूरिज्म में दुनिया के प्रमुख स्थानों में अपनी जगह बना लेंगे
मेरे प्यारे देशवासियों आप सब को फिर एक बार विविधता से भरे हुए भारत के विविधविविध त्योहारों की भी बहुतबहुत शुभकामनाएं
हाँ ये भी ज़रूर देखना कि दीवाली के दिनों में पटाखे वगैरा से कहीं आगजनी कहीं किसी व्यक्ति का नुकसान न हो जाए
इसके लिए जो भी ऐतराजएहतियात बरतना चाहिए आप लोग ज़रूर ऐतराजएहतियात बरतिये
ख़ुशी भी होनी चाहिए आनंद भी होना चाहिए उत्साह भी होना चाहिए और हमारे त्योहार सामूहिकता की महक भी लाते हैं सामूहिकता के संस्कार भी लाते हैं
सामूहिक जीवन ही एक नया सामर्थ्य देता है
उस नये सामर्थ्य के साधना का मुकाम होता है त्योहार
आइये मिलजुल करके उमंग से उत्साह से नये सपने नये संकल्प के साथ हम त्योहारों को भी मनाएँ
फिर एक बार बहुतबहुत शुभकामनाएं
धन्यवाद्